यहां पर एक स्टाल सा लगा है जहां लोग आकर गिलास में कुछ लाल सा पी रहे हैं।

डांस कर रहे हैं और अपने टाइम को इंजॉय कर रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें हम यह देख सकते हैं कि यह एक थेरेपी सेंटर है जहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिलती है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक स्टोर है आकाश नाम से बहो--

और बड़ा सा एक मॉल है जिसमे हमें अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी।

यहां अलग अलग कलर की साड़ियां देखने को मिलती है और डब्बो में पैक कुछ गारमेंट्स और कपड़े देखने को मिलते हैं।

हमें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो कि हम लोगों को अलग अलग ओकेजन पर दे सकते हैं।

बाहर को हम देखें तो इधर एक एक्टिवा खड़ी है एक वेन है एक बाइक है।

इसमें बहोत से लोग आ रहे हैं जिसमें बहोत से लोग समझना चाहते हैं की यह हो क्या रहा है।

अगल बगल हरियाली है बहोत बड़ा सा एरिया है जिसमें इन्हें खुले आम छोड़ रखा है।

ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर बहुत जोरों की बारिश हुई है यहां बहुत ज्यादा कीचड़ है।

इस तस्वीर में हम यह भी देख सकते है कि एक खिड़की है एक दरवाजा है कुछ सीढ़ियां हैं।

तस्वीर में हम देख सकते है कि ओपन ग्राउंड्स की फोटो है।

तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहां पर एक झोपड़ी है।

जो दो बड़े लोग हैं उनमें से एक के हाथ में येलो कपड़ा है।

सीन में हम देख सकते है कि अलग अलग पौधों से निकले हुए फ्लॉवर्स है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

और इसमें हमें पत्तियां देखने को मिलती हैं जो कि सिल्वर की प्लेट में पड़ी है और यह--

एक फिश मार्केट है जहां पर हमें फिश देखने को मिलती है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यह एक सोफा शॉप है।

यहां पे हम आगे देख सकते हैं की ग्रे से कलर के पत्थर से बने हैं जो की जोड़ रहे हैं।

छोटी छोटी झोपड़ियों जैसे मंदिर देखने को मिलते हैं।

हर झोपड़ी के ऊपर एक झंडा देखने को मिलता है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है कि यह एक गैरेज की तस--

वीर है यहां पर एक गाड़ी खराब है और उसके कुछ पार्ट्स नीचे पड़े हैं।

इस तस्वीर से हमें यह पता लगता है कि ये बहुत स्वच्छ जगह है यहां पर या तो ऑफिस या कोई कंपनी बनी है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक साड़ी की दुकान है जहां पे हमें रंग बिरंगी साड़ी देखने को मिलती है।